और बुद्ध जो है वो हाथ जोड़े हुए हैं।

इसके दीवार का कलर लाइट पिंक है सीलिंग का कलर व्हाइट है।

यह ईमेज एक फॉल का इमेज है।

सीढ़ियों के आजू बाजू अ दो वाइट गमले रखे हुए हैं।

जो शॉपिंग सेंटर है उसके ऊपर का जो अह दीवाल है उसका कलर ग्रे है।

उसके नीचे बच्चों के छोटे छोटे फ्रॉक रखे हुए हैं।

यह एक फाउंटेन का इमेज है।

इसके बगल में एक स्काई ब्लू कलर का भी प्लास्टिक दिख रहा है।

यह इमेज एक जिम का इमेज दिख रहा है।

बाइक के पीछे वाले सीट पर हेलमेट रखे हुए इसमें कुछ लेडिस है जो की रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है।

ये पुल काफी लंबा और स्टेट पुल है।

और उसका जो अह जो दाढ़ी बना रहा है वो चेक शर्ट पहना हुआ है जो कि ब्लैक और स्काई ब्लू कलर का है।

बड़ी बड़ी खिड़कियां दिख रही है और बिल्डिंग के सामने बहुत सारे बाइक लगे हुए हैं।

यह इमेज एक वर्कशॉप का इमेज है।

जिम के इक्विपमेंट जो है वो ब्लैक कलर के हैं।

और इसमें कुछ अदर लैंग्वेज में लिखा हुआ।